यहां फोटो में हमें बहुत से लड़के दिख रहे हैं।

यहां एक आदमी दिख रहा है।

और भी कलर की यहां हमें कुर्सियां दिखाई दे रही है।

फोटो में हमें यहां पे बहोत बड़ा--

और यहां हमें लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

दो मंजिल की बिल्डिंग दिख रही है।